बहोत बड़ा घर और एक पेड़ है और ये स्विमिंग पूल का पानी भी बहोत ही मस्त है और ये स्विमिंग पूल का पानी नीला रंग का है और तीन सीढ़िया बनाई गई है ।

इठो एक जीम घर है और यहाँ बहोत सारा जीम की मशीन --

और ये सैलून में दो आ लड़का खड़ा है और एक लड़का एक लड़का शीशे को खीच रहा है फोटो ये मोबाइल ले के--